--और साईड में एक घर दिखाई दे रहा है जिसपे सफ़ेद पानी की टंकी रखी हुई है कुछ हरी सी दूबा दिखाई दे रही है और आसमान दिखाई दे रहा है।

--बहुत बड़ी-सी नदी दिखाई दे रही है जहा पर दोतीन बच्चे कीयनरे पे नहाते हुए दिखिया दे रहे है ओर यह पर थोड़ी सी दूर पर कही घर दिखाई दे रहे है जिनका रंग सफेद कलर का दिखाई दे रहा हैं।

एक दुकान पर कई कुरकुरे बाहर पैकेट टंगे हुए है टॉफ़ी रखी हुई है डिब्बे में और यहाँ पर मोटर साइकिल और स्कूटी बाहर खड़ी हुई है साइडो में और कई --

और सामने कुछ गुंडी सी दिखाई दे रही है लाल कलर की कुर्सी और भी कुर्सी दिखाई दे रही है और यहाँ पर रोड के साइड में मोटर साइकिल और साइकिल भी दिखी है खड़ी और यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहे है गुंटियों के पीछे आसमान दिखाई दे रहा है।

और इसपे एक स्पीकर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर और यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा है। मस्जिद काफी अच्छी लग रही है।

यहाँ पर कई पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं अधिक मात्रा में और सफेद सा आसमान दिखाई दे रहा है और --

एक बहुत बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लाल कलर का गेट दिखाई दे रहा है खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं बैठने की चेयर्स दिखाई दे रही हैं और --

लाइब्रेरी है और उसके बाहर एक गाड़ी है कार खड़ी हुई हैं साईड में और भी घर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर दो लाल कलर की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं और बैठने की फुल व्यवस्था वो दिखाई दे रही है और कुर्सीयां भी दिखाई दे रहे --

स्लाइड दिखाई दे रही है जो कि तीन है स्लाइडो के रंग गुलाबी पीले हरे कलर के है जिन पर दो स्लाइडो पर बच्चे चढ़ते हुए दिखाई दे रहे है।